यह एक जंगल है यह जंगल काफी घना है।

यहाँ पर दो बच्चे डूब बूब रहे हैं।

यह एक बिल्डिंग है यह बिल्डिंग काफी बड़ा एवं ऊंचा है।

इस चर्च पर बहुत लोग सफेद कपड़े पहनकर आकर यहाँ चर्च देखते है।